यह कॉलेज बहुत बड़ी है। यह बहुत से छात्र --

भिंडी आलू आदि बिक रहे हैं।

आदमी बैठे हुए है जो सफेद कपड़े में तथा एक आदमी नीली शर्ट में है।

यह एक स्टैंड है बस स्टैंड है।